ये एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है जो कि बोहोत पुराना लग रहा है। इसके पत्थर काले-काले जैसे दिख रहे हैं।

और ये लाल रंग की दीवारें है इसकी। बाहर से पूरा लाल है और इसका अ शीशे का दरवाजा है। दरवाजा खुला हुआ है। अ पार्लर के अंदर एक छोटा सा स्टूल रखा हुआ है।

और इसके चारो तरफ छोटी छोटी पतिमाएं भी रखी हुईं हैं कुछ पत्थर कि बनी हुई है कुछ पीतल के धातु कि बनी हुई है और मंदिर के ऊपर में एं फूलो का हार लगा हुआ --

यह तस्वीर एक बस की है। टूरिस्ट बस लग रहा है जैसे यात्रियों को घुमाने के लिए भ्रमण करने के लिए जो बसों का इस्तेमाल किया जाता व्यवहार किया जाता वही बस है।

दीवारों और चबूतरों से बनाया हुआ गेट है बहुत ही सुन्दर नक्काशी की गयी है सुनेहरे रंगो में अच्छा लग --

सामने मे दुकान के ठीक सामने एक खम्बा है नीले रंग का।

और दुकान के पास मे दो लकड़ी की स्टूल दो लकड़ी के बेंचे रखी --

इस चित्र हमें दिख रहा है की पलंग के अलग-अलग हिस्से खोलकर रखे हुए हैं उसके सिरहाने का दोनों साइड के हिस्से और जो जहाॅं पर सोते हैं। लोग वो -चो-चो-चो-चोड़ा जो लंबा सा हिस्सा होता है वो भी हिस्सा खोलकर जमीन पर रखा हुआ है।

और व्यायाम करने के लिए जो चलने का जो होता है जिसमे खड़े होकर लोग चलते है।

जो मैट कलर की है इसमें ज्यादा तर अ लाल रंग से मिलते झूलते रंग हैं और ये बहोत ही बड़े एक डब्बे मे रखा है; कई सारे --

और शटर के बाईं तरफ अ दाहिनी तरफ एक दुकान है मोबाइल रिपेयरिंग की और उसके ठीक सामने में एक मोटरबाइक खड़ा है।

उसके बाजू में और कुछ किराने की दुकान और लॉजिस्टिक की दुकान है और सामने में और अ किराने की दुकान के सामने में मछली व मछली वाले का मतलब बना हुआ स्टैंड ।

ये एक तलाब का चित्र है या आप इसे झील भी कह सकते है और इसके अ झील के अ दुसरी तरफ में --

केसरिया फिर धीरे धीरे भूरा होने लगता है वैसा ही दिख रहा है।